कार के पिछले शीशे पर कुछ स्टीकर भी लगे हैं।

जिन में कई मंजिलें और बालकानी है।

रेस्टोरेंट काफी साफ सुथरा और आधुनिक दिखता है।

कुछ मेजों पर सफेद मेजपोश और फूलदान रखे हुए हैं।

कंक्रीट या पत्थर का रास्ता दिखाई दे रहा है।

जिसमें ऊंचे ताड़ के पेड़ एक रास्ते के किनारे लगे हुए हैं।

इमारत की वास्तु कला आधुनिक और प्रभावशाली लगती है।

आसपास ताड़ के पेड़ और हरियाली भी दिखाई दे रही है।

प्लेट सफेद रंग की है और उसमें चावल और मांस का मिश्रण दिखाई दे रहा है।

जिसके लम्बे पतले पत्ते निचे की ओर झुके हुएं है।

यह तस्वीर एक गोल धातु की थाली में कई मछलियां दिखाई देती हैं।

इस चित्र में लड़की एक विज्ञान प्रयोगशाला में कार्य करती हुई दिखाई दे रही है।

उसके पीछे एक आदमी बैठा है जिसने काला कलर का कपड़ा पहना हुआ है।

इसमें कई सफेद कुर्सियां दर्शकों के लिए रखी गई है।

जो व्यक्ति खड़ा है उसने काले कलर का शर्ट व काले कलर का पैंट पहना हुआ है।

काउंटर के ऊपर एक पारदर्शी की ढक्कन है।

इस तस्वीर में एक हरी सतह वाली स्नूकर टेबल कमरे के मध्य में स्थित है।

इस तस्वीर में कई बच्चे और कुछ वयस्क घास के मैदान पर बैठे हुए कुछ रचनात्मक गतिविधि में लगे हुए हैं।

सड़क के किनारे स्थायी दुकानें लगी हुई है।

पानी का रंग हल्का भूरा या मटमैला है।

एक बच्चे ने काले कलर की टी शर्ट व काले कलर का लोअर पहना हुआ है।

जिनमें लॉन कटी हुई झाड़ियां और पेड़ शामिल हैं।

कुछ लोग वेटर या सर्विस करने वाले जैसे दिख रहे हैं।

उसके पीछे एक और व्यक्ति सफेद रंग की टी शर्ट पहने हुए हैं।

और वह किसी उपकरण या मशीन के पास खड़ा है।

यह एक इमारत पर एक बड़ा होर्डिंग या विज्ञापन लगाने का दृश्य दिखाती है।

इमारत के आगे बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

जो एक छत वाले संरचना के नीचे आराम कर रहे हैं।

छत कोष खंबो या सहारे से टिकाया गया है।

शेर का रंग हल्का भूरा है और वह स्वस्थ दिख रहा है।

यह शेरों के लिए एक प्राकृतिक आवास जैसा वातावरण बनाने की कोशिश की गई है।

दुकान के ऊपर एक चमकदार साइन बोर्ड लगा है जिस पर बड़े अक्षरों में सखावत लिखा हुआ है।